और दो तीन बिल्डिंग बनल बा | मेंस इलाका ऊपर पोस्टर लागल हौवे ।

गार्डन में बड़े छोटे बच्चे सब लोग योगा करत ह। पैर वाला एक्सरसाइज --